एक स्कूल है स्कूल में बहुत सारे बच्चे से दिख रहे हैं बहुत सारे मेम सब लोग बैठे हुए हैं और एक आदमी इस साइड खड़ा हुआ है हाथ में कुछ लेरा है दो तीन --

मिस्तरी पिलर गाड़ रहे हैं छड़ पे दिखाई दे रहा है पेर पौधा से पीछे दिखाई दे रहा है बहुत सारे--

असमान का रंग उजला और थोरा थोरा नीला दिखाई दे रहा है यहां पे घेरा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक रूम है जिसमें लाइट लगा हुआ है और वो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है यह खिड़की दिखाई दे रहा है।

रात्रि का समय है यहां पे लाइट जल रहा है तीन चार आदमी कुर्सी पर बैठे हुए है।

चार आदमी पलिया पे भी बैठे हुए नीचे दो आदमी खरा हुआ है बाल्टी है यहां पे साइकिल दिखाई दे रहा है यहां पे --

यहां पे बहुत सारे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं घांस सब दिखाई दे रहा है यहां पे कंघी सा दिखाई दे रहा है यह --

यहां पे नीचा में लोहा सा रखा हुआ है यहां पे कुर्सी सा रखा हुआ है कुर्सी पे कपड़ा रखा हुआ है यहां पे टायर से रखा हुआ है नया नया--

ये एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे कार्स लगे हुए हैं एक कार इधर लगा हुआ है।

यह एक घर दिखाई दे रहा है जिसके बाहर हरियाली छाई हुई है यहां पे गेट और दिखाई दे रहा हैगेट फूल एक परा हुआ है।

यहां पे एक बहुत बड़ा सा पोल दिखाई दे रहा है यहां पे पानी सा दिखाई दे रहा है पानी का रंग बिछा दिखाई दे रहा है यहां पे --]

मुदे एक माँ सरस्वती का रोल प्ले कर बालिके डांस कर रहीं हैं प्रोग्राम कर रही है तीन चार तिरंगा चार पांच तिरंगा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे स्कूल का पोस्टर सटा हुआ है जिसमें बच्चे वच्चे दिखाई दे रहा है यहां पे लगा हुआ है टेंट लगा हुआ है।

यहां पे पांच सौ दिखाई दे रहे हैं बांधा हुआ है यहां पे केला दिखाई दे रहा है यहां पे --

हरियाली छाई है ऊपर ऊपर का दिखाई दे रहा है आसमान थोड़ा थोड़ा है यहाँ पे पक्षी दिखाई दे रहा है जो हरा कलर का दिखाई दे रहा है सरा हुआ है।

घर दिखाई दे रहा है घर के बाहर एक घिरा हुआ है ग्रिल दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का इसमें--

और पानी टंकी भी धरा हुआ है बहुत सरे हरे भरे पेड़ पौधे कटे कटे दिखाई दे रहे हैं आसमान का रंग नीला छाया हुआ है।

ये किराना दुकान है जिसमें बहुत सारे किराना सामान सब दिखाई दे रहा है बहुत सारा ठंडा सब दिखाई दे रहा है पानी --